यह एक दुकान है दुकान में ऊपर पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे पानी की बॉटल्स दिख रही हैं कुछ ब्रेड के पैकेट्स रखे हुए हैं।

यह एक है रूम टाइप में है जहापे काफी सारे --

बाउंड्री खीची हुइ है आजु-बाजु काफी ज्यादा पेड़-पौधे दिख रहे हैं एक बोट लगा हुआ है यहाँ पे।

अ यह एक जिम रूम है यहाँ पे एक लड़का सेल्फी लेते हुए दिख रहा है सामने एक मिरर लगा हुआ है।

लाइटिंग लगी हुई है जो की रात में चलती है और सामने कारपेट बिछा हुआ है।

तो पहना हुआ वहां पे दो लोग बैठे हुए है सामने --

यह एक सी टाइप में दिख रही है यहाँ पे काफी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है उसका नाम लिखा हुआ है।

एक आंटी जाती हुई दिख रही है जिसने मास्क लगाया हुआ है पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है यहाँ पे।

यहां ये एक क्लिनिक है जो की अभी बंद है यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर ब्लू --

सामने एक रेड कलर गाली खली हुइ है।

यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है दो --

एंड पिंक कलर के हैं यहाँ पे येलो कलर कुछ और भी टंगा हुआ है यहाँ पे साड़ियाँ टंगी हुई हैं।

एक गाय दिख रही है जिसका कलर वाइट है यहाँ पे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

एक खजूर का पेड़ दिख रहा है ऊपर गर्मी का टाइम है ये देखो पेड़ सुख गए हैं।

और रौड से राइट जाती हुई दिख रही हैं यहाँ पे काफी ज्यादा खंभा दिख रहें हैं।

उपर बादल दिख रहें हैं साफ एक दो लोग मंदिर के अंदर हैं।

यह घर के सामने एक कलरफुल गेट लगा हुआ है लोहे का इसमें ज्यादा का ब्लैक कलर का --

हां यह एक सैलून टाइप में है यहाँ पे वॉश रखा हुआ है अंदर जाने के लिए लोहे का --

एक शटर टाइप में दिख रही है मशीन वाली ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है एक लड़का उसको सुधार रहा है।

अ यह एक मार्केट है यहाँ पे एक रोड दिख रही है रोड के ऊपर एक स्कूटी चलाते हुए एक इंसान दिखा रहा है उन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट और पैंट पहना हुआ है सामने से --

शॉप है जहाँ पे खाने-पीने का सामान रखा हुआ है यहाँ पे एक बोर्ड भी लगे हुए हैं दो-तीन टॉवर दिख रे --